यह तैतीस ग्यारह के विधुत उपकेन्द्र जंगीपुर गाजीपुर में है जो कि हमारे जिले में पड़ता है।

जोकि बाहर बोहोत सारे क कॉन्डी एयर कंडिशनर लगे हुए हैं। ऊपर कुछ रूम भी है और नीचे भी शायद रूम है या जंगला है।